ए_सी लगी हुई दिख रही है और कुछ टेबल रखी हुई दिख रही है।

मुझे कई सारे बॉटल रखे हुए दिख रहे हैं बॉटल मुझे कई सारे अलग अलग कलर के दिख रहे हैं।

मुझे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है और बिल्डिंग के पास एक छोटा सा प्लेस गार्डन दिख रहा है।

हॉल में मुझे व्हील चेयर रखी हुई दिख रही है और मुझे डस्टबिन भी दिखाई दे रहा है।